एक व्यक्ति भी मुझे साफ नजर आ रहा है।

यह फोटो किसी चर्च के अंदर का है।

फोटो में मुझे एक सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है।

एक टेबल के ऊपर मुझे कुछ खाने पीने की सामग्री चम्मच वगैरा प्लेट भी नजर आ रही है।

फोटो में मुझे एक मॉल की लॉबी नजर आ रही है।